इसने ऑरेंज और ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है ।

आप देखेंगी कि इस दुकान में काफी सारी क़िताबें नजर आ रही हैं ।

अब इस पिक्चर मे हमे एक लेबोरेटरी की फोटो नजर आ रही है |

जहाँ पे दो मालगाड़ी की बोगियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ।

लाइट्स काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं।

गार्डन का फूटपाथ जो है वो काफी लुभावना दिख रहा है।

ये पिक्चर किसी मंडप जैसी नजर आ रही है।

आप देख सकते हैं की इस मॉल की फर्श वाइट कलर की है।

जिनमें से एक बाइक का कलर ब्लू है।

इस पिक्चर में हमें एक मारुती एट हंड्रेड कार नजर आ रही है ।

उसने लाल कलर की ही टी-शर्ट भी पहनी है।

जो कि ईशा भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे।

और यहाँ का चारो ओर का दृश्य जो है --